और बगल में सीढ़ी के एक पौधा दिख रहा है हरा भरा पेड़--

यहाँ एक दृश्य नज़र आ रहा है सामने एक टोटो यहाँ पर खड़ा है जोकि--

यहाँ पर एक दृश्य नजर आ रहा है सामने देखने से लग रहा है की यह कोई बहुत बड़ा रूम है कोई म्यूजिक का यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक के --

कोई गराज है यहाँ पर बहुत बड़ा जगह है यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ी कार है वाइट कलर --

और यहां तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का --

और सड़क के किनारे आजु - बाजु बाउंड्री बना हुआ है जो की वाइट कलर का पेंट किया गया है।

हरे-भरे और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट भी नज़र आ रहा है ग्रे ग्रे कलर का बगल में एक घर जैसा है।

कोई आदमी या औरत है जो कि यहाँ पर हाथ में अमरूद लिए हुए है सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा यहाँ पर --

और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है एक गाय भी नज़र आ रही है पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है अच्छा लग रहा है देखने में--

यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई खेत जैसा जगह है यहाँ पर सामने--

यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है सामने देखने से ऐसा लग रहा है की यह कोई मंदिर--

है और यहाँ पर सामने नंद जी की मूर्ति बनी हुई हैं।

बहुत हरे - भरे पेड़ - पौधे दिखाई दे रहै है बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का --

यहां पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है की यहाँ पर कोई कैम्पैन चल रहा है यहां पर बहुत सारे--